जहां पर बहुत सारी चीजों के लिए प्रस्तापन किया गया है जहां पर एक कंप्यूटर चार कंप्यूटर आदि नजर आ रहें--

जोकि मुझे नजर नहीं आ रही है यहां पर बहुत सारी सोफे वगैरा आदि रखे हुए जहां पे ब्लैक कलर के चप्पल व्हाइट कलर के सोफे नजर आ रहे --

यहां पे सोफे आदि रखे गए हैं जो कि बहुत सुंदर नजर आ रहे हैं यहां पे एक ग्राइंड कट का सोफा रखा गया है जोकि पी--